चेयर का कलर वाइट एंड रेड है यहां पर--

सामने एक दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा है स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा है यहां पर--

को स्वेटर भी पहना है शायद ठंडी का सीजन है।

दो औरत बैठी और यहां पर तीन आदमी बैठे हैं ये शायद बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है।

यहां पर और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा इधर साइड में बैग रख--

यहां पर शायद टाइल्स बेची जाती है यहां पर तीन सीढ़ी रखी हुई गई है इधर बाहर दुकान--

कलर सीढ़ी का कलर ब्लू है इधर यहां पर बहुत सारी लाइट लगाई है ये ऊपर साइड --

एक बड़ा सा दिखाई दे रहा है यहां पर दो तीन लोग हैं जिनका फेस क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है।

सामने एक चाय की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर छोटा सा स्टोर लगाया है यहां पर--

बाहर बहुत सारा कचड़ा पड़ा हुआ है एक डब्बे में भी कचड़ा है।

और ये घर में बहुत सारी लाइट चल रही है घर के बाहर भी लाइट लगाई है यहां पर जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई है यहां पर--

जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं एक आदमी एक लड़का है जिसने साइकिल --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

सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं यहां पर बहुत सारी भीड़ हो रही है एक सामने कार खड़ी हुई है।

जो कि बोलरो है और एक ऑटो है जो कि जा रहा है कहीं पे--

यहां पर लाइट से ऊपर वो उस कैफे के ऊपर भी जाने के लिए जो वो सीढ़ी से वो बनाया गया ऊपर।

यहां पर बहुत सारी मछली रखी गई है ऊपर--

सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि एक बड़े से पहाड़ पर आके वो बैठा हुआ है यह शायद यहां पर अपनी फोटो खिंचवा रहा है।

यहां पर शायद यह लोग कॉपी यहां पर बहुत सारी शायद कॉपी का--

जा रही है और यहां पर कुछ स्कूटी बाइक खड़ी--

यहां पर और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर कंप्यूटर लगे हुए हैं ज्यादातर--

लगाई गई है यहां पर स्ट्रेट दिखाई दे रहा है।

बॉक्स भी रखे हुए हैं यहां पर बहुत सारी --

सामने एक टी_वी मोटर्स दिखाई दे रहा है यहां पर--

यह शायद लाइब्रेरी है यहां पर बहुत सारी बुक रखी गई हैं।

यहां पर बहुत सारे यहां पर और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है।

यहां पर कुछ लो ये पट्टी भी यहां पर लगाई गई।

यहां पर बच्चे भी दो तीन दिखाई दे रहे हैं और एक इधर साइड में औरत खड़ी हुई है जोकि --

यहां पर बहुत सारी चेयर रखी गई है जो कि रेड कलर की है यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं यहां पर मटके से--

ये क्या पता काहे की तो मशीन है जिसका कलर ब्लू ब्लू है।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

यहां पर दुकान में दुकान में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है पर यहां पर ज्यादातर पर--